तथा नीचे ग्रासेस भी लगा हुआ हैं।

फ्लावर्स भी लगे हुए हैं। बहोत ही सुंदर दिख रहे हैं गार्डन ।

गर्मी में तो घूमने के लिए बोहोत ही अच्छा है। एकदम ठंडा कूल कूल --

एंड गेट का कलर ब्राउनी जैसा एंड ब्लैक दिख रहा है।

छोटी छोटी फिसलपट्टियां बनी हुई हैं साइड में भी बनी हुई हैं। छोटे छोटे बच्चे के लिए बनाया गया है खेलने के लिए।

इस इमेज में हमे सीटी दिखाई दे रही है तथा इस सिटी के बीच में एक मैदान दिखाई दे रहा है।

इ एकदम व्यवस्थित लगे हुए हैं।

बहोत ही ओल्ड फैशन दिखाई दे रही है।

और वो लेटे हुए हैं थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहे हैं दूसरे पर्सन उन्हें थेरेपी दे रहे है।

न् उनको थेरेपी दे रहे हैं एक पर्सन ।

यहाँ बोहोत सारी भीड़ भी लगी हुई है बोहोत सारी पब्लिक आयी हुई है।

एंड मोबाइल नंबर लिखा हुआ है।

यह इमेज छत की दिखाई दे रही है। छत की सफाई कर रहे हो दोनों।

यहाँ बहोत सारा चुने का पट्टी बिखरा हुआ है। उसको साफ कर रहें है दोनों पर्सन ।

कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मोबाइल बना हुआ है नंबर लिखा हुआ है डबल एट डबल वन नाइन फाइव --

ये जूते पैर में तो पहने हुए हैं लेकिन हाथ में भी एक जूते पहने हुए हैं।

सामने एक इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक जैसा ड्रेस कोड पहने हुए है।

बच्चे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ ग्रोसरी का सामान दिखाई दे रहा है।

किराना दिखाई दे रहा है कुछ खाने का सामान दिखाई दे --

यह इमेज में नदी के दिखाईं दे रही है। नदी पे बहोत ही बड़ा पुल बना हुआ विशाल पुल बना हुआ --

एक सी जितनी भी प्रकार की डिशेज़ बन रही है सारी डिशेज़ बन रही है।

कि यहाँ पे टुरिस्ट घूमने आते --

यह इमेज हमें दिखाई दे रही फिस कॉर्नर की --

'' यहाँ मेन्स वियर भी दिखाई दे रहा है एंड किड्स वियर भी दिखाई दे रहा --''

और नीचे से नदी निकली है लेकिन पुल एकदम मंदिर के जैसा दिख रहा --